मोज़िला थंडरबर्ड में एड्रेस बुक पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एड्रेस बुक से सम्पर्कों को कैसे देखें जोड़ें सुधारें और डिलीट करें
हम यह भी सीखेंगे कि कैसे एक नया एड्रेस बुक बनाएँ
मौजूद एड्रेस बुक को डिलीट करें
अन्य मेल अकाउंट्स से सम्पर्कों को इम्पोर्ट करें
यहाँ हम उबंटू 1204 पर मोज़िला थंडरबर्ड 1301 इस्तेमाल कर रहे हैं
एड्रेस बुक क्या है
एड्रेस बुक उसी प्रकार से काम करती है जैसा कि आपके मोबाईल फोन में कांटैक्ट्स सुविधा
आप एड्रेस बुक का इस्तेमाल सम्पर्कों को बनाने और देखरेख के लिए कर सकते हैं
थंडरबर्ड में दो प्रकार की एड्रेस बुक्स होती हैं पर्सनल एड्रेस बुक आपको नये सम्पर्क बनाने की अनुमति देती है
कलेक्टेड एड्रेस बुक स्वतः ही बाहर जाने वाले या भेजे गये मेल्स से ई मेल एड्रेस प्राप्त करती है
लॉन्चर में थंडरबर्ड आइकन पर क्लिक करें
थंडरबर्ड विंडो खुलती है
अब पर्सनल एड्रेस बुक में सम्पर्कों को जोड़ना सीखते हैं
मेन मेन्यू से टूल्स और एड्रेस बुक पर क्लिक करें
एड्रेस बुक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
बाएँ पैनल में आप दोनों पर्सनल और कलेक्टेड एड्रेस बुक्स देख सकते हैं
डिफ़ॉल्ट रूप से बाएँ पैनल में पर्सनल एड्रेस बुक चुनित है
दायाँ पैनल दो भागों में विभाजित है
ऊपरी आधा भाग सम्पर्कों को दर्शाता है
निचला आधा भाग ऊपर चुनित सम्पर्क की पूरी जानकारी दर्शाता है
चलिए एक नया अकाउंट बनाते हैं
टूलबार में न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करें
न्यू कॉन्टैक्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
कॉन्टैक्ट टैब पर क्लिक करें
फर्स्ट के लिए अमीन्यूकांटैक्ट प्रविष्ट करें
ई मेल के लिए यूजरोन एटी जीमेल डॉट कॉम प्रविष्ट करें
ध्यान दें कि डिस्प्ले नामे फील्ड स्वतः ही फर्स्ट नामे के साथ अपडेट हो गया है
प्राइवेट टैब पर क्लिक करें
इस टैब का इस्तेमाल सम्पर्क का पूरा डाक पता रखने के लिए करें
आप ज़रुरी जानकरियाँ और यहाँ तक कि सम्पर्क के फोटो को रखने के लिए वर्क ओथर और फोटो टैब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं
ओक पर क्लिक करें
सम्पर्क जुड़ गया है और दायें पैनल में प्रदर्शित होता है
उसी प्रकार से दो और सम्पर्क वीमायन्यूकॉन्टैक्ट और ज़्माइन्यूकॉन्टैक्ट जोड़ते हैं
मानते हैं कि हम सम्पर्कों को नाम के आधार पर क्रमबद्ध करना चाहते हैं
मुख्य मेन्यू में व्यू सोर्ट बाय और नामे पर क्लिक करें
ध्यान दें कि सम्पर्क डिफ़ॉल्ट रूप से आरोही क्रम में क्रमबद्ध हैं
आरोही क्रम में क्रमबद्ध करने के लिए मुख्य मेन्यू से व्यू सोर्ट बाय और असेंडिंग पर क्लिक करें
वैकल्पिक रूप से एड्रेस बुक डायलॉग बॉक्स में दायें पैनल पर केवल नामे पर क्लिक करें
नाम अब अवरोही क्रम में क्रमबद्ध हो गये हैं
अब एक सम्पर्क को खोजें
हम सम्पर्क को नाम या ई मेल के द्वारा खोज सकते हैं
चलिए नाम अमीन्यूकांटैक्ट से खोजते हैं
एड्रेस बुक डायलॉग बॉक्स पर जाएँ
सर्च फील्ड में मायन्यूकॉन्टैक्ट प्रविष्ट करें
सर्च फील्ड पर ध्यान दें
मैग्निफाइंग ग्लास आइकन के बजाय एक छोटा क्रॉस आइकन प्रदर्शित होता है
ऊपर दायें पैनल पर केवल सम्पर्क अमीन्यूकांटैक्ट प्रदर्शित होता है
अब सर्च फील्ड में क्रॉस आइकन पर क्लिक करें
सभी सम्पर्क अब ऊपर दायें पैनल में प्रदर्शित होते हैं
ट्यूटोरियल रोकें और यह नियत कार्य करें
ई मेल्स को सब्जेक्ट के द्वारा खोजें
मानिए कि ज्माइकॉन्टैक्ट का सम्पर्क पता बदल गया है
क्या हम इस सूचना को बदल सकते हैं160
हाँ हम कर सकते हैं
दायें पैनल से ज़्माइन्यूकॉन्टैक्ट चुनें
अब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए दायाँ क्लिक करें और प्रॉपर्टीज चुनें
एडिट कॉन्टैक्ट फोर ज़्माइन्यूकॉन्टैक्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
नाम को माइन्यूकांटैक्ट में बदलते हैं
अब डिस्प्ले नामे फील्ड को माइन्यूकॉन्टैक में बदलते हैं
हम वर्क टाइटल और डिपार्टमेंट भी जोड़ेंगे
वर्क टैब पर क्लिक करें
टाइटल में मैनेजर प्रविष्ट करें और डिपार्टमेंट में एचआर प्रविष्ट करें
ओक पर क्लिक करें
नीचे दायें पैनल में सम्पर्क विवरण देखें
यह अपडेट हो गया है
अब थंडरबर्ड में हम अवांछित सम्पर्कों को कैसे डिलीट कर सकते हैं160
पहले सम्पर्क चुनें
कॉन्टेक्स्ट मेन्यू देखने के लिए दायाँ क्लिक करें और डिलीट पर क्लिक करें
एक पुष्टिकरण डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
सम्पर्क डिलीट हो गया है और सम्पर्क सूची में अब नहीं दिख रहा है
थंडरबर्ड आपको खुद की एड्रेस बुक बनाने की भी अनुमति देता है
यह दो डिफॉल्ट बुक्स पर्सनल एड्रेस बुक और कलेक्टेड एड्रेस के अलावा है
चलिए एक नया एड्रेस बुक बनाते हैं
याद रहे आप एड्रेस बुक डायलॉग बॉक्स को खुला रखें
मुख्य मेन्यू से फाइल पर जाएँ न्यू पर क्लिक करें और एड्रेस बुक चुनें
न्यू एड्रेस बुक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
एड्रेस बुक नामे फील्ड में आफिस कांटैक्ट्स टाइप करें
ओक पर क्लिक करें
जो हमने एड्रेस बुक बनाई वह बाएँ पैनल में प्रदर्शित है
आप इस एड्रेस बुक को डिफ़ॉल्ट एड्रेस बुक्स की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं
इस ट्यूटोरियल को रोकें और यह नियत कार्य करें
एक नया एड्रेस बुक बनाएँ और उसमें सम्पर्क जोड़ें
अगला एड्रेस बुक को डिलीट करना सीखते हैं
ख़याल रहे जब आप एक एड्रेस बुक डिलीट करते हैं तो उससे जुड़े सभी सम्पर्क भी डिलीट हो जाते हैं
बाएँ पैनल से एड्रेस बुक आफिस कांटैक्ट्स को डिलीट करने के लिए चुनें
कॉन्टेक्स्ट मेन्यू देखने के लिए दायाँ क्लिक करें और डिलीट चुनें
डिलीट करने के लिए आपसे पुष्टि करनी हेतु एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
ओक पर क्लिक करें
एड्रेस बुक डिलीट हो गयी है
इस ट्यूटोरियल को रोकें और इस नियत कार्य को करें
एडिशनल आफिस कांटैक्ट्स नामक एक नया एड्रेस बुक बनाएँ
एड्रेस बुक टूलबार में एडिट ऑप्शन का उपयोग करें
इस एड्रेस बुक को डिलीट करें
एड्रेस बुक डायलॉग बॉक्स के मुख्य मेन्यू से एडिट और सर्च एड्रेस चुनें
सम्पर्कों को खोजने के लिए एडवांस्ड सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल करें
थंडरबर्ड हमें अन्य मेल अकाउंट्स से भी सम्पर्कों को इम्पोर्ट करने की अनुमति देता है
इस प्रकार से हम बिना सम्पर्क जानकरी खोये सम्पर्कों को अपडेट कर सकते हैं
अपने जी मेल अकाउंट से सम्पर्कों को इम्पोर्ट करते हैं
सबसे पहले हम जी मेल अकाउंट खोलते हैं
एक नया ब्राउज़र खोलें और युआरएल wwwgmailcom टाइप करें
Enter दबाएँ
जीमेल होम पेज प्रदर्शित होता है
यूजरनेम के लिए स्टूसरोन एटी जीमेल डॉट कॉम प्रविष्ट करें
अपना पासवर्ड प्रविष्ट करें
सिग्न इन पर क्लिक करें
जीमेल विंडो प्रदर्शित होती है
इस ट्यूटोरियल के उद्देश्य के लिए हमने जी मेल में चार सम्पर्क बनाएँ हैं
जी मेल विंडो के ऊपर बायीं तरफ जीमेल और कांटैक्ट्स पर क्लिक करें
कांटैक्ट्स टैब प्रदर्शित होता है
मोरे पर क्लिक करें और एक्सपोर्ट चुनें
एक्सपोर्ट कांटैक्ट्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
व्हिच कांटैक्ट्स डीओ यू वांट टो एक्सपोर्ट फील्ड में
अल्ल कांटैक्ट्स चुनें
व्हिच एक्सपोर्ट फॉर्मेट फील्ड मेंOutlook सीएसवी फॉर्मेट चुनें
एक्सपोर्ट पर क्लिक करें
ओपनिंग contactsसीएसवी डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
सेव फाइल चुनें
ओक पर क्लिक करें
डाउनलोड्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
यह डिफ़ॉल्ट फोल्डर है जिसमें डॉक्युमेंट सेव हुआ है
फाइल डिफ़ॉल्ट डाउनलोड्स फोल्डर में contactsसीएसवी के रूप में सेव हो गयी है
डाउनलोड्स डायलॉग बॉक्स बंद करें
मुख्य मेन्यू से टूल्स पर क्लिक करें और इम्पोर्ट चुनें
इम्पोर्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
एड्रेस बुक्स चुनें
नेक्स्ट पर क्लिक करें
सिलेक्ट टाइप ओएफ फाइल लिस्ट से टेक्स्ट फाइल पर क्लिक करें
नेक्स्ट पर क्लिक करें
डाउनलोड्स फोल्डर के लिए ब्राउज़ करें
सिलेक्ट व्हिच टाइप्स ओएफ फाइल्स आरे शाउन बटन पर क्लिक करें और अल्ल फाइल्स चुनें
contactsसीएसवी चुनें
ओपन पर क्लिक करें
इम्पोर्ट एड्रेस बुक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
सुनिश्चित कर लें कि फर्स्ट रेकॉर्ड कंटेन्स फील्ड नेम्स बॉक्स चेक हो
इस ट्यूटोरियल में हम केवल फर्स्ट नामे लास्ट नामे और प्राइमरी इमेल फील्ड को देखेंगे और मिलायेंगे
और बायीं तरफ से अन्य सभी फील्ड्स को अनचेक करेंगे
बायीं तरफ का फर्स्ट नामे पहले से ही दायीं तरफ के फर्स्ट नामे के सीध में है
आप बाएँ कॉलम के मोजिल्ला थंडरबर्ड एड्रेस बुक के फील्ड्स को दायें कॉलम के जी मेल रेकॉर्ड दाता टो इम्पोर्ट कोलम्न से मिलाने के लिए मूव यूपी और मूव डाउन बटन्स का इस्तेमाल करेंगे
बायीं तरफ के लास्ट नामे फील्ड को चुनें और मूव डाउन बटन पर क्लिक करें
ध्यान दें कि एड्रेस बुक फील्ड्स कॉलम का लास्ट नामे और रेकॉर्ड दाता टो इम्पोर्ट कॉलम का लास्ट नामे अब सीध में है
अब प्राइमरी इमेल चुनें और मूव डाउन बटन पर तब तक क्लिक करें जब तक वह e मैल एड्रेस के सीध में न आ जाय
ओक पर क्लिक करें
एक सूचना एड्रेस बुक इम्पोर्ट हो गयी है प्रदर्शित होती है
फिनिश पर क्लिक करें
जी मेल एड्रेस बुक थंडरबर्ड में इम्पोर्ट हो चुका है एड्रेस बुक डायलॉग बॉक्स के बाएँ पैनल में एक नया फोल्डर कांटैक्ट्स जुड़ गया है
कांटैक्ट्स पर क्लिक करें
ई मेल एड्रेस के साथ प्रथम नाम प्रदर्शित होते हैं
हमने जी मेल एड्रेस बुक को थंडरबर्ड में इम्पोर्ट कर लिया है
डायलॉग बॉक्स में ऊपर बाएँ कोने में लाल क्रॉस पर क्लिक करके एड्रेस बुक बंद करें
अंततः थंडरबर्ड से लॉगआउट करें
मुख्य मेन्यू में फाइल और क्विट पर क्लिक करें
इसी के साथ हम थंडरबर्ड पर इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गये हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि कैसे एड्रेस बुक में सम्पर्कों को जोड़ें देखें अपडेट करें और डिलीट करें
हमने यह भी सीखा कि कैसे एक नयी एड्रेस बुक बनाएँ
एक मौजूदा एड्रेस बुक डिलीट करें
अन्य मेल अकाउंट्स से सम्पर्कों को इम्पोर्ट करें
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
एक नयी एड्रेस बुक बनाएँ
सम्पर्कों को जोड़ें और देखें
अपनी खुद की ई मेल आईडी से सम्पर्कों को थंडरबर्ड में इम्पोर्ट करें
जब एड्रेस बुक इम्पोर्ट कर रहे हों तो सभी फील्ड्स को चुनें और मिलाएँ
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद